लाइट है एक इलेक्ट्रिक की बड़ी सी खुटी है जिसमे लंबे-लंबे से तार है साइड में एक दो तल्ला बिल्डिंग है जिसका कलर रेड कलर है ऊपर में एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है साइड में एक कार खड़ा हुआ है।

दुकान हैं जिसमे कुछ सामन रखे हुए हैं जिसकी कांच की अलमारी सी बनी हुई है।

ऊपर कुछ जूते रखे हुए दिख रहे हैं जो आसमानी वाइट ब्लैक हैं।